इहा के लइका मन बहुत होशियार आहय हमर--

कई प्रकार का सब ऐठ--

ए हमर गाँव शहर क बीच पुलिया ह जिन कर मे ट्रेन चलथे रोड हवे और मस्त यहाँ नदी में--

ये हमर गाँव कर दुकान खेल का सामान दुकान है जहाँ अनेक प्रकार के खेल सामान मिले और --

यहां सही दाम म मिलेल यहां घर से अपन से बनायेल गेल और बहुत भीड़ रहे थे ए।